मुझे इस फोटो में कुछ डब्बे दिखाई दे रहे है।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

बहुत बड़ा स्टेज दिखाई दे रहा है।

बोहोत सारी अलग-अलग प्रकार की चिड़ियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में साड़ियां दिख रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी चट्टाने दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में चट्टानें दिख रही हैं।